यह एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां एक फंक्शन आयोजित हो रहा है यहां पे बोहुत ढेर सारे महिलाएं और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर तीन लोगों की कुर्सियां रखी गई है।

यहां पे एक लकड़ी का मेज भी बना हुआ है।

यहां पे एक लोहे का डेस्क भी है।

यहां पर एक ब्लैक बोर्ड भी बना है।